पिलर बने हुए हैं छत हो निकली हुई है छज्जा निकला हुआ है।

बड़े बड़े बीच में पेड़ लगे हैं पेड़ के आसपास फूल निकल रहे हैं छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं कुछ लोग भी हैं।

पेड़ लगे हुए है रात का टाइम है फरस टाइल्स चोख्ठे वाले फरस पे टाइल्स लगे हुए है।

बना हुआ है स्टेज के ऊपर मूर्ति लगी हुई है प्रोग्राम हो रहा है मूर्तियों का हॉल है बहुत बड़ा सा लोग बेठे हुए है।

इन्हें गार्डन में पौधे लगे हुए हैं और फूल लगा हुआ है पीले कलर का और पेड़ लगे हुए हैं बड़े-बड़े एक गाड़ी खड़ी है बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। घास निकल रही है। मिट्टी हो रहा है गार्डन ।